ये एक हॉस्पिटल दिख रहा है जिसमें पेशेंट का पूरा बेड दिख रहा है।

आईसी रूम टाइप का लग रहा है इसमें आईसी रूम का दिख रहा है जिसमें पूरा पेशेंट का सामान रखा हुआ है हॉस्पिटल का पूरा सामान रखा हुआ है।

यह तो कोई खेती दिख रहा है जिसमें पूरा खेती मतलब खेती चार्स हो रहा है जिसमें हरा-हरा छोटे-छोटे पौधे भी लगा हुआ है खेती हुआ है।

पूरा पेड़ छोटा छोटा पेड़ लगा हुआ हैं आसमान में दिख रहा हैं अंधेरा--

ये तो खाली एक मैदान दिख रहा है जिसमें पूरा पेड़ हो-- पेड़ दिख रहा है।

एक होटल दिख रहा है एक केरेला का हो केरला होटल दिख रहा है।

पेड़ बहोत बड़ा बड़ा दिख रहा है नारियल का पेड़ बहोत सारा है।

जिसमें सब आप अच्छे सब इंजॉय कर रहा है अ बहोत ही सामान भी रखा हुआ है।

पूरा रेती ईटीस इटा आ सब घर का बना हुआ समान पूरा पड़ा हुआ है तो बहुत गमला भी दिख रहा है फूलों का पेड़ का गमला दिख रहा है और आदमी भी पांच छह जन खड़ा है और--

दिख रहा है और पीछे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर भी दिख रहा है बहुत सारा पत्थर--

ये कोचिंग दिख रहा है जिसमें बच्चे लोग अह कोचिंग कर रहा है ड्राइंग बना रहा है।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

ये एक पेट्रोल पंप का जगह दिख रहा है इसमें हा --

ब्लू कलर का चेयर भी दिख रहा है।

एक प्रेग्राउंड दिख रहा है पूरा सूरज का लाइटिंग आ रा है अह सूरज डूब रहा है उसका लाइटिंग आ रहा है।

ये कोई ऑफिस दिख रहा है जिसमें बहुत सारा म अ जेन्टस लेडीज पूरा बैठे हुए हैं।

एक भगवान का अह फोटो दिख रहा है एक--

ये माँ सरस्वती का भग--भगवान का फ--फोटो है जिसमें पूजा हो रहा है बहुत अच्छे से डेकोरेशन कराया गया है बहुत सारा फूगा लगा हुआ है बैलून लगा हुआ है और एक लेडीज बैठे हैं जेन्स भी है बच्चे लोग भी हैं।

एक मिठाई का दुकान दिख रहा है बहुत वैरायटी का मिठाई दिख रहा है बहुत सारा अ मिठाई रखा हुआ है।

और बहुत बड़ा एक टेबल दिख रहा है टेबल में बहुत सारा मिठाई रखा है बहुत बड़ा वैरायटी का तो मीठा में अह मिठाई अह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बड़ा मी --